और दिखा चद्दर सा --

रेड कलर की दिवरे दिख रही हैं।

गेट दिख रहा सामने --

और सामने टू विलेर बाइकस दिख रही है। सामने की तरफ एक बोर्ड दिख रहा है वहां पर।

जाकेट पहना हुआ है ऑरेंज कलर का व्हाइट कलर का कैप पहने हुआ है।

रेड ब्लू पानी का फावरा दिख रहा है।

और बहोत से तंबू लगे हुए दिख रहे है सामने की तरफ।